यहां पे नीचे फर्श पे टाइल्स लगा है।

और सीकड़ भी लगाया है।

और आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहोत बड़ा पंडाल बनाया गया है।

यह एक बैंक है इस बैंक के बाहर बहोत सारा आदमी लोग खड़े हैं।

यह एक रोड का दृश्य है।